ये एक टॉय शॉप है। यहां पे बच्चों के बहुत सारे खिलौने मिल रहे हैं कैक्टस मिल रहा है बार्बी डॉल्स रखी हुई हैं काफी सारी। बार्बी ड्रीम हाउस है रखे हुए हैं। बच्चों के बैट रखे हुए हैं हॉकी रखी हुई है चेय रखी हुई है।

यह एक वाटरपार्क की इमेज है इसपे गेट बना हुआ है गेट के बाहर एक बंदर का मुँह बना है जो के मुँह खोला हुआ है उसके बड़े बड़े दाँत दिखाई दे रहे है।

लड़कियों ने व्हाइट कलर की सलवार और ब्लैक कलर की सलवार और ब्लैक दुपट्टा ओढ़ा हुआ है लड़को ने ब्लैक कलर की जीन्स पेहनी हुई है बच्चे यहा प्रेयर कर रहे है।

ये पार्क की इमेज है यहा पर बहुत सारे ऊ म गेट बने हुए है जिस पे आर्ट्स बने हुए है बहुत ही खूबसूरत एक दो तीन चार पांच छे छे आर्ट्स बने हुए ।

यह अंदर जाने का रास्ता है एक आदमी खड़े हुए है इस साइड बहुत सारे पेड़ लगे हैं बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट किया गया है ।

और एक साइकिल भी रखी हुई है बच्चों की बच्चों के कपड़े शश टंगे हुए--

ये एक पब्लिक लाइब्रेरी है जिसपे लिखा हुआ है प्री मंडलीय पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी गया इसकी स्थापना अठारह सौ पचपन में हुई थी।